यह हमें एक वर्क्शाप दिख रहा है इस इमेज में जिसमें एक कार पे काम किया जा रहा है कुछ मैकेनिक लोग उस कार को ठीक करने का प्रयास कर रहें हैं और उस के आगे की तरफ बोनेट उम खुल्ला हुआ है उस कार का।

और उस दुकान में दो व्यक्ति खड़े हुए है जिसमे जिसके अलावा एक व्यक्ति बाहर खड़ा हुआ है जो मोबाइल चला रहा है।